इश्यूइंग एंड रिटर्निंग आ बुक के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे यूज़र की सारी जानकारी निकालना एक बुक इशू करना एक बुक रिटर्न करना
यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबन्टु वर्जन 1204 नेटबीन्स इडे 73 जेडीके 17 फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210 आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और जेएसपीएस का इन्वेंटरीज़ को बनाना और देखना
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एडमिन सेक्शन कैसे कार्य करता है
यहाँ इस ट्यूटोरियल में हमने एडमिन सेक्शन में अधिक फंक्शनैलिटीज़ जोड़ी है
अतः ब्राउज़र पर जाते हैं
हम एडमिन के रूप में फिर से लॉगिन करते हैं
हम देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिन सेक्शन पेज में दो अन्य विकल्प हैं लिस्ट यूजर्स और checkoutरिटर्न बुक
अब इडे पर आते हैं
हम देख सकते हैं adminsectionjspमें दो अन्य रेडियो बटन्स हैं
एक लिस्ट यूजर्स के लिए और दूसरा checkoutरिटर्न बुक के लिए
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
हम लिस्ट यूजर्स के रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं
इसके पास सारी जानकारी है जैसे फर्स्ट नामे सुरनामे अगे जेंडर और यूजरनेम स्टेप्स पिछले दो विकल्पों के समान ही हैं
हमने इन्हे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था
अब अगले विकल्प पर क्लिक करते हैं जो चेकआउट करना या बुक रिटर्न करना है
हमें एक फॉर्म मिलता है जो आपको चेकआउट के साथ रिटर्न बुक की अनुमति देता है
अब हम उसी के लिए कोड देखेंगे
इडे पर वापस आते हैं
हमने checkoutरिटर्न बुक पर क्लिक किया
अतः मेन्यूसलेक्शन इज़ इक्वल टू चेकआउटबुक स्टेप्स वही हैं जैसी हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखीं थीं
लेकिन यहाँ हम रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को checkoutजेएसपी पर फॉरवर्ड करते हैं
अब चेकआउट डॉट जेएसपी पर आते हैं
यह पेज लिस्टबुक्स डॉट जेएसपी के समान है
सिवाय इसके कि प्रत्येक बुक के सामने एक रेडियो बटन है
अतः हम उस बुक को checkoutरिटर्न कर सकते हैं
हमारे पास उस यूज़र का यूज़रनेम प्राप्त करने के लिए यूजरनेम फील्ड भी है जिसे बुक को चेकआउट करना है
हमारे पास बुक की रिटर्न डेट सेट करने के लिए डेट फील्ड भी है
हम आज की डेट से एक सप्ताह आगे की रिटर्न डेट सेट करते हैं
यह क्लास कैलेंडर प्रयोग करके हुआ है
इस क्लास का एड फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है
पहला साल का वर्तमान दिन है
दूसरा दिनों की संख्या है जो वर्तमान दिन में जोड़ी जानी है
हमने सात दिन जोड़ लिए हैं
ध्यान दें कि फॉर्म एक्शन इज़ इक्वल टू चेकआउटसर्वलेट अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
अब हम बुकिड 1 पर क्लिक करेंगे
यूजरनेम में आर्य टाइप करें
हम देखते हैं कि रिटर्न डेट आज की डेट से एक सप्ताह आगे की है
ध्यान दें कि अवेलेबल कॉपीज की संख्या 9 है
चेकआउट बुक पर क्लिक करें
हमें चेकआउट सक्सेस पेज मिलता है
एडमिन सेक्शन पेज पर वापस जाने के लिए हम हेरे पर क्लिक करेंगे
फिर से checkoutरिटर्न बुक पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि अवेलेबल कॉपीज की संख्या कम होकर 8 हो गयी है
हम अभी इसके लिए कोड देखेंगे
इडे पर वापस आते हैं
checkoutservletजावा पर जाते हैं
हमने एरर्म्सग्स लिस्ट सेट कर दी है
हमने एरर्म्सग्स को रिक्वेस्ट में सेट किया है
हमें गेटपैरामीटर प्रयोग करके रिक्वेस्ट से यूजरनेम मिलता है
उसी प्रकार हमें checkout book return book और बुक इद मिलता है
आगे हम इंटीजर के रूप में इद से बुकिड को अलग करते हैं
हम यूजरनेम और बुक इद को प्रमाणित करते हैं
यदि Checkout book और Return Book नुल है तो हम इसे भी प्रमाणित करते हैं
फिर यदि इनमे से कोई एक नुल नहीं है तो हम इसे प्रमाणित करते हैं
हम userExistsमेथड़ प्रयोग करके यह जांचते हैं कि यूजर सिस्टम में है या नहीं हम फिर यूजरेक्सिस्ट्स वेरिएबल में मेथड की रिटर्न की हुई वैल्यू को संचित करते हैं
अब हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करेंगे पहले हम क्वेरी निष्पादित करते हैं यह जांचने के लिए कि यूजरनेम टेबल में है या नहीं
फिर हम इंटीजर वेरिएबल यूजरेक्सिस्ट्स को 0 से इनिशिअलाइज़ करते हैं
अगर यूजरनेम होता है तो हम यूजरेक्सिस्ट्स को 1 सेट करते हैं
फिर यूजरेक्सिस्ट्स की वैल्यू रिटर्न होती है
अतः अगर मेथड 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब यूजर सिस्टम में नहीं है
वरना एल्से अगर यूज़र है तो हम बुकलरेडयिश्यूड मेथोड को कॉल करते हैं
फिर हम बुकिश्यूड में मेथड की रिटर्न की हुई वैल्यू संचित करते हैं
यहाँ हम जांचते हैं कि वही बुक उसी यूज़र को पहले भी दी जा चुकी है या नहीं
अब हम बुकलरेडयिश्यूड मेथड पर आते हैं
यहाँ हमने इंटीजर वेरिएबल बुकलरेडयिश्यूड को 0 सेट किया है
हम क्वेरी निष्पादित करते हैं यह जांचने के लिए कि समान बुकिड की बुक उसी यूजर के द्वारा इशू की गयी है
हमें चेकआउट टेबल से बुकिड मिलती है
यदि बुकिड होती है तो वेरिएबल बुकलरेडयिश्यूड को 1 सेट करें
फिर हमें बुकलरेडयिश्यूड की वैल्यू रिटर्न होती है
अतः यदि मेथड 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब उस यूज़र ने यह बुक पहले ही बॉरो की है
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
अब यह जांचने की कोशिश करें कि वही बुक उसी यूज़र द्वारा ली गयी है
यूजरनेम में आर्य टाइप करें
बुकिड 1 के सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें
फिर चेकआउट बुक पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि हमें एक एरर मैसेज मिलता है जो है थे सामे यूजर हस अलरेडी बोरोवेड थिस बुक अब वापस इडे पर जाते हैं
यदि सिस्टम में यूजरेक्सिस्ट्स और यदि checkout book नुल नहीं है तो हम चेकआउट मेथड को कॉल करते हैं
अब देखते हैं कि इस मेथड में हम क्या करते हैं
यहाँ हमें सम्बंधित इद की अवेलेबलकोपीज मिलती हैं
हमें यह बुक्स टेबल से मिलता है
फिर हम उपलब्ध प्रतियों के नंबर्स को वेरिएबल अवेलेबलकोपीज में संचित करते हैं
हम जांचते हैं कि यदि अवेलेबलकोपीज 0 से ग्रेटर हैं और बुकिश्यूड 0 के इक्वल हैं
हमें रिक्वेस्ट से डेटियोफ्रेटर्न मिलती है और इसको रिटर्नडेट में संचित करते हैं
फिर हम इंसर्टिंटोचेकआउट को कॉल करते हैं
हम देखेंगे कि हम इंसर्टिंटोचेकआउट में क्या करते हैं
यहाँ हम book id यूजरनेम और रिटर्नडेट को चेकआउट टेबल में संचित करते हैं
फिर हम डिक्रीमेंटवेलेबलकॉपीज मेथड कॉल करते हैं
हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करते हैं
यहाँ बुक्स टेबल में अवेलेबलकोपीज को 1 कम करने के लिए हम क्वेरी को निष्पादित करते हैं
फिर हम सेचेकआउटइंटरक्वेस्ट मेथड कॉल करते हैं
अब इस मेथड पर आते हैं
इस मेथड में हम रिक्वेस्ट में चेकआउट एट्रीब्यूट सेट करते हैं
फिर हम रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को successcheckoutजेएसपी पर भेजते हैं
यदि अवेलेबलकोपीज 0 हैं तो हम प्रिंट करते हैं थेरे आरे नो कॉपीज ओएफ थे रिक्वेस्टेड बुक अवेलेबल
अब सक्सेसचेकआउट डॉट जेएसपी पर आते हैं
यहाँ पहले हमें रिक्वेस्ट से चेकआउट एट्रीब्यूट मिलता है
फिर सफल चेकआउट के लिए हम मैसेज प्रदर्शित करते हैं
आप अपने आप भिन्न 2 एरर्स को जाँच सकते हैं
अब हम बुक को रिटर्न करते हैं
अतः ब्राउज़र पर जाते हैं
बुकिड 1 पर क्लिक करें और यूज़रनेम में आर्य टाइप करें
फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें
हमें मैसेज मिलता है कि बुक सफलतापूर्वक रिटर्न की जा चुकी है
अन्य checkoutरिटर्न के लिए हेरे पर क्लिक करें
अतः हम एडमिन सेक्शन पेज पर वापस आते हैं
checkoutरिटर्न बुक पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि उपलब्ध प्रतियों की संख्या बड़ा दी गयी है
हम इसके लिए कोड देखेंगे
इडे पर वापस आते हैं
चेकआउटसर्वलेट डॉट जावा खोलें
हम जांचते हैं यदि यूजरेक्सिस्ट्स 1 के बराबर है और return book नुल के बराबर नहीं है
फिर हम रिटर्नबुक मेथड कॉल करते हैं
अब इस मेथड पर आते हैं
यहाँ हम बुक इद के लिए बुक्स टेबल से टोटलकॉपीज और अवेलेबलकोपीज सिलेक्ट करते हैं
हम टोटलकॉपीज और अवेलेबलकोपीज को टॉटकॉपीज और अवेलकॉपीज में संचित करते हैं
फिर हम जांचते हैं कि क्या अवेलेबल कॉपीज टोटलकॉपीज से अधिक हैं
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
अब एक यूजर के लिए बुक रिटर्न करते हैं जिसने बुक बॉरो नहीं की है
यूज़रनेम में मधुसें टाइप करें
बुक इद 1 पर क्लिक करें
फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि हमें थे गिवेन यूजर हस नोट बोरोवेड थिस book
का एरर मैसेज मिलता है
इडे पर वापस आते हैं
यहाँ हम जांचते हैं यदि बुकिश्यूड 1 के इक्वल है
फिर हम रिमूवफ्रॉमचेकआउट मेथोड कॉल करते हैं
अब इस मेथड पर आते हैं
यहाँ उस एंट्री को जिसने बुक को रिटर्न किया है चेकआउट टेबल से मिटाने के लिए हम क्वेरी निष्पादित करते हैं
फिर हम इन्क्रीमेंटवेलेबलकॉपीज मेथड कॉल करते हैं
अब इस मेथड पर आते हैं
यहाँ हमने अवेलेबलकोपीज को 1 से बढ़ाया है
बुक्स टेबल को अपडेट करने के लिए हम क्वेरी निष्पादित करते हैं
फिर हम सेट्रेचरनिंटरक्वेस्ट मेथड कॉल करते हैं
अब इस मेथड पर आते हैं
यहाँ रिक्वेस्ट में हम रिटर्नबुक एट्रीब्यूट सेट करते हैं
फिर रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके हम सक्सेसरेटर्न पेज को फॉरवर्ड करते हैं
सक्सेसरेटर्न पेज उसी के समान है जैसा हमारे पास सक्सेसचेकआउट पेज के लिए था
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
लॉगिन पेज पर वापस आते हैं
हम देख सकते हैं हमारे पास विजिटर्स होम पेज नामक एक लिंक है
हम देख सकते हैं हमें सारी उपलब्ध बुक्स की लिस्ट मिलती है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सारे यूज़र्स की लिस्ट बनाना एक बुक इशू करना एक बुक रिटर्न करना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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT इंट्रो पर उपलब्ध है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर मन्क के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद